ये आदमी भी ये दम खड़ा है दम रोलिंग में दम पुष्प भाउ जैसे मजा आ गया क्या पोज़ मार के ई लईका खड़ा हैयहाँ नाव पे--

सरस्वती पूजा एकदम मस्त हो रहा है पर जबरदस्त हो रहा है जो तिरंगा ले ले आदमी खड़ा है न वो गजब दिख रहे है मस्त का पूजा कर रहे है मस्त टेंट भी एक नंबर हुआ है पोस्टर भी यहाँ पर लगा है।

और पर्दा भी लगा यहाँ पर ऊ लाल कलर वाले गजब मस्त पी _टी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं वो जो नीला कलर वाली पहनी है ना वो तो गजब मस्त कर रही है एक नंबर।

गजब मूर्ति लग रहा है मेरे को तो बहुत अच्छा पसंद आ गया है वो जो धोती पिहरे ना वो मेरे को बहुत अच्छा पसंद आये हैं और जो लाल कलर पिहरे है ना--